इसमें बहोत सारे टेबल और कुर्सियां लगी हुई है।

इस इमारत की पेंट येलो कलर की है।

पीले रंग के बोरा दिखाई दे रहे हैं।

बगल में चेयर आसमानी कलर के हैं।

इसमें बहोत बड़ी तादाद में भीड़ है व्यक्तियों का।

इसमें बहोत सारे सब्जी और फल है।

इमारत के नजदीक ही बहोत सारे बाइके दिखाई दे रहे हैं।